लिबर ऑफिस राइटर में इन्सर्टिंग इमेजेस छवियाँ प्रविष्ट पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्नलिखित सीखेंगे
डॉक्युमेंट में एक इमेज फाइल प्रविष्ट करना
राइटर में टेबल्स प्रविष्ट करना
राइटर में हाइपरलिंक्स प्रविष्ट करना
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में GNUलिनक्स का उपयोग कर रहे हैं और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334
हम लिबर ऑफिस राइटर में एक इमेज फाइल कैसे प्रविष्ट करते हैं इससे शुरू करेंगे
चलिए अपनी resumeओडीटी फाइल ओपन करते हैं
डॉक्युमेंट में एक इमेज प्रविष्ट करने के लिए पहले resumeओडीटी डॉक्युमेंट के अंदर क्लिक करें
अब मेन्यूबार में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें फिर पिक्चर पर क्लिक करें और आखिर में फ्रॉम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है
अब आप लोकेशन फील्ड में फाइल का नाम लिखकर इमेज चुन सकते हैं यदि आपने इसे अपने सिस्टम में सेव किया हुआ है
चूँकि हमने एक भी सेव नहीं की है हम ऑप्शन्स में से इमेज को प्रविष्ट करेंगे
जो डिफॉल्ट रूप से प्रदान की जाती हैं
अतः डायलॉग बॉक्स के बाएँ ओर पर पिक्चर्स ऑप्शन पर क्लिक करें
अब किसी एक इमेज पर क्लिक करें और आखिर में ओपन बटन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि इमेज आपके डॉक्युमेंट में प्रविष्ट हो गई है
आप इस इमेज का आकार भी बदल सकते हैं और इसे रिज्यूम के ऊपर दाएँ कोने तक ड्रैग कर सकते हैं
अतः पहले इमेज पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि इमेज पर रंगित हैंडल्स दिखतें है
किसी एक हैंडल पर कर्सर रखें और बायाँ माउस बटन प्रेस करें
कर्सर को ड्रैग करके इमेज का आकार बदलें
जब आकार बदल जाय इमेज पर क्लिक करें और इसे एडिटर के ऊपरी दायें कोने तक ड्रैग करें
क्लिपबोर्ड या स्कैनर का उपयोग करके और गैलरी से लेना इमेज प्रविष्ट करने की अन्य प्रचलित पद्धतियाँ हैं
अब हम सीखेंगे कि राइटर में टेबल्स कैसे प्रविष्ट करें
टेबल्स लिबर ऑफिस राइटर में उपयोगकर्ताओं को उनकी जानकारी को सारणी फॉर्म में रखने के लिए सक्षम बनाता है
अपने डॉक्युमेंट में टेबल प्रविष्ट करने के लिए आप या तो टूलबार में टेबल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और टेबल का आकार चुन सकते हैं या आप यह मेन्यूबार में इंसर्ट ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं
अतः हैडिंग एड्यूकेशन डिटेल्स के नीचे टेबल प्रविष्ट करने के लिए कर्सर को एस हैडिंग के नीचे रखें
अब मेन्यूबार में इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें और फिर टेबल्स ऑप्शन पर क्लिक करें
यह विविध फील्ड्स के साथ डायलॉग बॉक्स ओपन करता है
नामे फील्ड में चलिए टेबल का नाम देते है रिज्यूम टेबल साइज हैडिंग के नीचे चलिए कोलम्न्स की संख्या 2 रखते हैं
रॉस फील्ड में ऊपरी ऐरो पर क्लिक करें 4 तक रॉस की संख्या बढ़ाएँ अतः कोलम्न्स और रॉस में अप और डाउन ऐरो का उपयोग करके आप टेबल का आकार बढ़ा व घटा सकते हैं
अब डायलॉग बॉक्स में ऑटोफॉर्मेट बटन पर क्लिक करें
यह नया डायलॉग बॉक्स ओपन करता है
जहाँ आप जो प्रविष्ट करना चाहते हैं वह टेबल का प्रारूप चुन सकते हैं
राइटर प्रारूप चुनने के लिए कई ऑप्शन्स देता है
हम फॉर्मेट के अंदर नोने ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फिर ओक बटन पर क्लिक करते हैं
फिर से ओक बटन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि डैंडिग के नीचे दो कॉलम और चार रो वाला टेबल प्रविष्ट हो गया है
अब हम टेबल के अंदर कोई भी जानकारी सारणी के रूप में लिख सकते हैं
उदहारस्वरूप टेबल के पहले कॉलम और पहले रो में सेल के अंदर क्लिक करें
हम यहाँ सेकंडरी स्कूल एक्जामिनेशन टाइप करते हैं
अब पास के सेल पर क्लिक करें और 93 परसेंट लिखें
अतः यह दिखाता है कि रमेश ने माध्यमिक स्कूल की परीक्षा में 93 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है
वैसे ही हम टेबल में अतिरिक्त शैक्षिक विवरण टाइप कर सकते हैं
सेल के ठीक नीचे सेल पर क्लिक करें जहाँ हमने सेकंडरी स्कूल एक्जामिनेशन टाइप किया है
हम यहाँ हाइर सेकंडरी स्कूल एक्जामिनेशन लिखते हैं और बगल के सेल में हम 88 परसेंट स्कोर लिखते हैं
अगली सेल तक पहुँचने के लिए तीसरी रो में पहली सेल पर क्लिक करें
वैकल्पिक रूप से एक सेल से दूसरी सेल पर जाने के लिए टैब की प्रेस करें
अतः टैब प्रेस करें और ग्रेजुएशन टाइप करें
बगल वाले सेल में 75 स्कोर टाइप करें
आखिरी रो में पहली सेल पर क्लिक करें पोस्ट graduation जीटीव्राइट 70 टाइप करें
अंततः आखिरी रो में हम पहली सेल में पोस्ट ग्रेजुएशन हैडिंग और निकटवर्ती सेल में 70 परसेंट स्कोर टाइप करते हैं
अतः देखेंगे कि टेबल शैक्षिक विवरण के साथ रिज्यूम में प्रदर्शित हो गया है
चलिए टेबल के आखिरी सेल पर कर्सर रखें
अब यदि हम टेबल की आखिरी रो के ठीक नीचे एक अतिरिक्त रो जोड़ना चाहें तो कीबोर्ड पर Tab की प्रेस करें
आप देखेंगे कि नई रो प्रविष्ट हो गई है
टेबल के बायें ओर पर हम पहड़ डिग्री प्राप्त की हुई टाइप करते हैं और दायें ओर पर हम 65 प्राप्तांक टाइप करते हैं
अतः हम देखेंगे कि Tab की एक दूसरे के नीचे नई रो को जोड़ने के लिए बहुत उपयोगी है
जब कर्सर आखिरी रो पर रखा हो
Tab और ShiftTab का उपयोग करके टेबल में सेल से सेल भी संचालन कर सकते हैं
टेबल में अन्य महत्वपूर्ण विशेषता ऑप्टिमल कोलम्न Widthऑप्शन है जो कि स्वतः सेल्स के कंटेंट्स के अनुसार कॉलम की चौड़ाई तय करता है
टेबल के दूसरे या दायें ओर के कॉलम में इस विशेषता को लागू करने के लिए पहले क्लिक करें और फिर दूसरे कॉलम में कर्सर कहीं भी रखें
अतः चलिए आखिरी सेल में टेक्स्ट के बाद 65 पर कर्सर रखें
अब मेन्यूबार में टेबल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर ऑटोफिट ऑप्शन पर जाएँ
मेन्यू में जो स्क्रीन पर दिख रहा है ऑप्टिमल कोलम्न विड्थ ऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि कॉमल में सेल्स के कंटेंट के अनुकूल कॉमल की चौड़ाई स्वतः ही तय होती है
उसी तरह हम टेबल में किसी भी कॉलम्स के लिए यह कर सकते हैं
आप अपने टेबल के लिए विभिन्न प्रकार के बॉर्डर्स सेट कर सकते हैं कोई भी बॉर्डर्स न रखने से लेकर सभी आंतरिक और बाहरी बॉर्डर्स रखने या आपके टेबल में केवल बाहरी बार्डर्स रखने के लिए
इसके लिए उपयुक्त ऑप्शन चुनने के लिए मुख्य मेन्यू में टेबल टैब और टेबल प्रोपर्टिज ऑप्शन बॉर्डर्स टैब चुनें
आगे हम सीखेंगे कि राइटर में हाइपरलिंक्स कैसे बनाए जाते हैं
उपयोगकर्ता हाइपरलिंक्स का उपयोग हाइपरटेक्स्ट को ब्राउज या देखने के लिए करता है
हाइपरलिंक्स डॉक्युमेंट के लिए संदर्भ है कि पाठक स्वयं शुरू कर सकते हैं या वह स्वतः ही शुरू हो जाता है
हाइपरलिंक पूरे डॉक्युमेंट को या डॉक्युमेंट में विशिष्ट एलिमेंट को इंगित करता है
फाइल में हाइपरलिंक बनाने से पहले हम पहले एक डॉक्युमेंट बनायेंगे जो हाइपरलिंक होगा
अतः टूलबार मेंNew आइकन पर क्लिक करें
एक नया टेक्स्ट डॉक्युमेंट ओपन होता है
अब हम इस नये डॉक्युमेंट में हॉबीज के लिए टेबल बनाते हैं
अतः हम हॉबीज हैडिंग लिखते हैं
एंटर की प्रेस करें
चलिए एक के नीचे दूसरा कुछ शौक लिखते हैं जैसे लिस्टेनिंग टो म्यूजिक प्लेइंग टेबल टेनिस और पेंटिंग
चलिए इस फाइल को सेव करें
टूलबार में सेव आइकन पर क्लिक करें
नामे फील्ड में फाइल का नाम हॉबी टाइप करें
सेव इन फोल्डर में डाउन ऐरो पर क्लिक करें और Desktopऑप्शन पर क्लिक करें
अब सेव बटन पर क्लिक करें
अतः फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो गई है
अब हम इस फाइल को बंद करते हैं
चलिए अब resumeओडीटी फाइल में हाइपरलिंक बनाते हैं जो इस डॉक्युमेंट को ओपन करेगा
अब हम शैक्षिक विवरण युक्त टेबल के नीचे हॉबीज हैडिंग लिखते हैं
हॉबीज टेक्स्ट हाइपरलिंक करने के लिए पहले हैडिंग हॉबीज पर कर्सर ड्रैग करके टेक्स्ट चुनें
अब मेन्यूबार में इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें और फिर हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक करें
एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें internetमेल्स और newsडॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट जैसे ऑप्शन्स हैं
चूँकि हम टेक्स्ट डॉक्युमेंट के लिए हाइपरलिंक बना रहे हैं हम डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं
अब पथ फील्ड में ओपन फाइल बटन पर क्लिक करें
नये डॉक्युमेंट पर जाने के लिए डायलॉग बॉक्स में डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक करें जिसे हमने बनाया हुआ है
अब hobbyओडीटी ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ओपन बटन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि फाइल के लिए जगहPath फील्ड में प्रविष्ट हो गई है
एप्ली फील्ड पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि टेक्स्ट हॉबीज रेखांकित है और यह नीले रंग में है
इसलिए टेक्स्ट अब हाइपरलिंक है
अब हैडिंग हॉबीज पर कर्सर रखें और कंट्रोल के और लेफ्ट माउस बटन दोनों एक साथ प्रेस करें
आप देखेंगे कि हॉबीज युक्त फाइल ओपन होती है
उसी तरह आप इमेजेस और वेबसाइट्स के लिए भी हाइपरलिंक बना सकते हैं
अब हम लिबर आफिस राइटर पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आते हैं
संक्षिप्त में बताते हैं कि हमने क्या सीखा डॉक्युमेंट में इमेज फाइल प्रविष्ट करना
राइटर में टेबल प्रविष्ट करना
राइटर में हाइपरलिंक्स प्रविष्ट करना
स्लाइड संख्या 7 देखें
व्यापक नियत कार्य
practiceओडीटी ओपन करें
फाइल में एक इमेज प्रविष्ट करें
2 कॉलम और 3 रोज के साथ टेबल प्रविष्ट करें
wwwgooglecom वेबसाइट ओपन करने के लिए हाइपरलिंक बनाएँ जब आप फाइल में इमेज पर क्लिक करें
निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध विडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का सार देता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं
हम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके वर्कशॉप्स कार्यशालाएँआयोजित करते हैं
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं हम उन्हें सर्टिफिकेट भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए हमें contactspoken tutorialorg पर संपर्क करें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
जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आई सीटी के माध्यम से समर्थित किया है
अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो